यहां पे फोटो सा चित्र सा दिख रहा है।

और साइकिल से टंगा हुआ दिखा हुआ दिखाई पैर से रोक रहा है।

यहां पे जाली जैसा दिखाई दे रहा है काउंटर जैसा कुछ रखा हुआ है वहां पे भी गोल जाली जैसा दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारा समान सारा रखा हुआ है।

लाइट सा दिखाई दे रह है यहां पे एक आदमी का हाथ दिखाई दे रहा है।

दिखाई देरा गेट दिखाई देरा काउंटर जैसा दिखाई देरा यहाँ पे--

और एक मछली सा दिखाई दे रहा है जो कि लकड़ का डब्बा है।

बहोत सारे वहां पे टी_वी जैसा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह वह नहीं है यहां पे बिजली का खंभा दिखा दिखाई बिजली का तार दिखाई दे रहा है इसमे कपड़ा जैसा लपेटा हुआ दिखाई दे रहा--

ये पिक्चर रात में दिखाई दे रहा है जिसमें दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा है।

टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे आदमी सब दिखाई दे रहा है बाहर पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है पोस्टर भी सटा हुआ बाहर दिखाई दे रहा है।

यहां पे पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे कुछ रखा हुआ फैन दिखाई दे रहा है यहां पे मलबाड़ी दिखाई दे रहा है फर्नीचर टाइल्स जैसा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।